ये पेट्रोल पम्प है पेट्रोल पम्प के अंदर कुछ लोग खडे हुए है।

एक आदमी ने यहा पे ग्रे पेंट और वाइट शर्ट पहने हुए।

ये कुछ गटलस लगे हुए है जिसे अलग अलग तरह के पेट्न्स है रेशमी--

कोटन के है यहा पे ग्रे रेड वाइट येलो --

हम्म कुछ दिखाई दे रहा है बहार दो गमले पड़े हुए है वाइट कलर की छत है।

ये एक ए म अ जगह मम जगह सा दिखाई देरा है जिसके टेबल पे एक आदमी बैठ है और आस पास में --

यहां पे कुछ हमें रोड जैसा दिखाई दे रहा है जहां पे कोई नही दिखाई दे रहा--

यहां पे कुछ लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं बहोत सारे लोग यहां पे इकट्ठा है।

बहोत सारे लोग बहोत सारी पब्लिक यहां पर इकट्ठा है गंगा में स्नान कर रही है।

और बाहर एक एक्टिवा खड़ी हुई है और दो गाडिये एक साइड पे खड़ी हुई है।

ये किसी रेलवे स्टेशन के पास किसी चंडी मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है।

आस पास में अः दूसरी साइड कुछ गाड़िया नज़र आरही है।

ये एक सलोन है जहा पे एक बचे की कटिंग की जा रही है उसके--

ये कुछ रोड जैसा दिखाई दे रहा है। जहां पर हमें गाड़ियां दिखाई दे रही है। एक मरुन कलर की गाड़ी और एक ग्रे कलर की गाड़ी है।